दो नौकाये नजर आ रही हैं। एक नौका पर बहोत सारे लोग --

तथा थोड़ा सा दृश्य पीछे का दिखाई दे रहा है। जहाँ की एक स्कूटी और एक रेड कलर की --

चित्र में हमें कोई समारोह होता हुआ नजर आ रहा है जो कि --